कुछ व्हाइट बॉल कुछ ऑरेंज बॉल बो --

और कुछ पैकेट भी रखे गए हैं अन --

और दो बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं उसके बाजु मे--

ये भीड़ में किधर जा रही है।

ये किसी बच्चों के प्लेइंग स्कूल की तरह दिखाई दे रहा है।

एक टी_वी है एक घड़ी है और --

ये एक साईं बाबा ऑटो मोबाइल्स की दुकान की तस्वीर है जिसके बाहर --

यह जय भवानी होटल की तस्वीर है जय भवानी होटल के पोस्टर के ऊपर--

इस फोटो में एक व्य--

बहुत पुस्तक लाल और सफेद कलर में हैं उसके ऊपर कुछ चीटियां चिपकाई गई हैं और--

ये एक जनरल स्टोर की तस्वीर है जिसके अंदर बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है एक टेबल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर चाभी है।